की बंद है उस पर सटर गिरा हुआ है सटर ग्रे कलर का है।

ठीक उसी के बाजू में आई_डी_एफ_सी फर्स्ट बैंक का ए_टी_एम नजर आ रहा हैए_टी_एम खुला हुआ है।

ऑफ मेंटल हेल्थ एनर्विलेशन शिमला।

इस तस्वीर में एक सैलून का शॉप नजर आ रहा है। जहां पर एक लड़का एक लड़की के--

कुछ रिक्शा और स्कूटी सामने से गुजर रहे हैं कुछ बाइक भी पार्क की हुई हैं।

बीच में ही एक बस्ती नजर आ रही है बस्ती के बीच से ही कुछ सीढ़ियां नजर आ रही है जो नीचे की ओर जा रही है।

इस तस्वीर में एक रूम नजर आ रहा है रूम में एक पेड़ लगा हुआ है उस पेड़ पर नीले रंग के--

पहाड़ नजर आ रहे हैं सूरज की रोशनी भी नजर आ रही है एक पूल --

इस तस्वीर में पानी भी नजर आ रहा है पानी के अंदर कुछ पेड़ लगे--

जा रही हैं और कुछ खम्बे लाइट्स के खड़े हुए उन पर तारे भी लगे तार --

दो बहुत सारी भीड़ नजर आ रही एक रूम है रूम के पास ही एक कैमरा --

दीवार के ऊपर बैठा हुआं हैं उसका एक हाथ नीचे की ओर एक हाथ ऊपर आसमान की तरफ है उसके दोनों हाथों में--

इस तस्वीर में एक मैदान नजर आ रहा है और दूर एक हरे रंग का --

जीम कर रहा हैऔर बहुत सारे जिम्स के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं।

एक शेड बना हुआ है उसमें एक चेयर रखी हुई नजर आ रही है।

और ठीक उसी के पीछे एक पीले रंग की दीवार खड़ी है।

सूरज की रोशनी इस चेयर्स और टेबल्स पर गिर रही हैऔर पूरा तरह से सुनसान नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक सफेद रंग का--

एक सफेद रंग का शर्ट पहने हुए अंकल उस साइकिल के पास खड़े हुए हैं और चार --

सीढ़ियां ऊपर की ओर जाते हुए नजर आ रही है।

इस तस्वीर में कुछ फोन्स के बॉक्स नजर आ रहे हैं। सभी फोन के बॉक्स पर--

कुर्सी के टेबल के ऊपर एक बार कोड भी रखा हुआ है और पीछे की ओर अलग अलग तरीके के--

टेबल लगे हुए हैं उस टेबल पर लाल रंग का कपड़ा बिछा हुआ है कुछ प्लेट्स है बॉटल से और ग्लासेस रखे हैं।